काली रंग की कुर्सी हैं और काफी सुंदर है।

यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे हैं।

यहां एक ब्लू कलर की बड़ी सी बस है।